जि सने हरे रंग की साड़ी पहनी है यहां एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

यहां छः कंप्यूटर दिखाई दे रहे हैं।

यह एक कपड़े की दुकान है।

कुछ आदमी दारू ले रहे हैं।